काफी आम खाने बहुत मीठा होता है काफी अच्छा लगता है आम खाने में।

पलंग है काफी अच्छा लग रहा है | यहाँ मास्क लगा के एक आदमी आये हैं | कुछ कर रहे हैं | काफी अच्छे लग रहे हैं।

देखने से काफी सुंदर लगा है ये देखने से सुंदर नजारा है थेंक --

लोकैशन उकेसन किया है पेंट बेंट किया है काफी अच्छा लग रहा है लेकिन काफी सुंदर नजारा लग रहा है बहुत सारी कुर्सियाँ ऐसे भी रखी --

काफी अच्छे लग रहा है डेकोरेशन उकेरेशन किया है पर्दे है पेंट वेंट किया है काफी अच्छे लग रहा है देखने से काफी खूबसूरत लग रहा है।

काफी अच्छे लग रहे होंगे देखने से पेंट वेंट किया है टेंपू में काफी सुंदर लग रहा है देखने से काफी अच्छे लग रहे हैं देखने से।

बैंक है ग्रामीण बैंक का पोस्टर लगा है | ताला लगा हुआ है | काफी अच्छा लग रहा है | पेंट वेंट किया है | काफी अच्छा लग रहा है | डेकोरेशन वेकोरेशन किया है।

देखने से काफी सुंदर लग रहा है नजारा इस दुकान का काफी सुंदर लगा थैंक्यू धन्यवाद।